जिस पर लिखा है जय भैरव नर्सरी भारत पेट्रोल पंप के सामने धामनोद रोड महेश्वर।

इस चित्र में हमें एक शादी के रिसेप्शन का दृश्य नजर आ रहा है।

हमे सुंदर झरना बहता दिखाई दे रहा है।

आस-पास बहुत ही सुंदर हरियाली है हमें यहाँ बहुत सारे पर्यटक नज़र आ रहे --

यह बारहसिंगा का कलर भूरा तथा काला है। हरे भरे वृक्ष नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें बहुत सारे सोलर पैनल दिखाई दे रहे हैं।

बाहर दो स्कूटी खड़ी हुई है।

नदी के आसपास हरी झाड़ियां दिख रही हैं।

इस सोफे में सुंदर कलाकृति बनी हुई है पीछे एक दरवाजा नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक कंपनी नज़र आ रही है।

इस फोटो में हमें एक विद्यालय का--

इस टेबल पर हमें तीन फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर रखे नजर आ रहे ये--

इस फोटो में हमें एक ग्रह निर्माण का कार्य होते हुए नजर आ रहा है।